एक ब्लैक कलर की मशीनें है तिन विंडो है ऊपर चद्दर लगी हुई है हम्म-एक पाइप जा रहा है।

कुछ कपड़े भी रखे हुए है निचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है कुछ ब्लेक कलर का कारपेट भी है ये छत का कलर यल्लो है।

यह एक बहुत पुरानी हवेली है ये हवेली मे सूरज के किरने पड़ रही है।

हवेली का कलर ब्लेक हो चूका है थोड़ा सा आसमान भी दिख रहा है।

अंदर पेड़ भी लगा हुआ है लाईट के खम्बे भी लगे हुए है के तार भी निकल रहे है एक न्यू बिल्डिंग भी बन रही है।

यह एक तालब है तलाब का पानी नीला दिख रहा है ऊपर नीले कलर का आसमान भी है आसमान के निचे एक--